बोतल भी है या अनेक टेबुल है ।

सड़क है इस सड़क पर दो बस खड़ी है ये बस काफी बड़ी है इस बस पर पैसेंजर भी है यहाँ पैसेंजर चढ़ते एवं उतरते है इस सड़क पर बहुत सी भीड़ भी है इ यह बस कहीं यहाँ से कहीं जाती है वहाँ से आ के रूकती है।

घास भी है यहाँ छोटे-बड़े अनेक प्रकार के पेड़ भी हैं इस मैदान के किनारे बड़े-बड़े पेड़ भी हैं।

यह एक स्कूल है यह स्कूल काफी बड़ा है इस स्कूल के बरामदा पर बहुत से बच्चे बैठे है यहाँ बच्चे तरह-तरह के काम कर रहे हैं यहाँ पर एक टीचर है एक मैडम भी खड़ी है यह स्कूल काफी सुंदर है।

कोई पैसे की लेन-देन करते हैं यहाँ बहोत से ग्राहक आते हैं पैसे जमा करने एवं निकासी क --